जैसे ने रेल्वे स्टेशन पे लाल रंग की एक ट्रेन यहा पे आके खड़ी है साथ ही एक प्लेटफॉर्म खाली भी है यहा पे यहा पे प्लेटफार्म पे एक रिक्षा रखा हुवा है जेसे कुछ बक्से रखे हुवे --

नदी का पानी एकदम साफ है। नदी के ब्रिज के ऊपर ही एक मंदिर है। पानी मे नदी की परछाई दिखाई दे रही है। आसपास से बहुत सारे पेड हरे-हरे हरियाली दिखाई दे रही है। आसमान एकदम सफेद--

बहुत सारी बाइक रखी गई है। यहा पे बाइक की शोरूम लगी हुइ है। ऊपर मे हरे रंग के तिरपन लगे जिसे काट की मदद से सपोर्ट दिया हुआ है।

यहा पे तीन सच्चे बड़े बड़े स्कूटी बाइक को यह पे रखी है। सारी बाइक नई है। इस को बेचने के लिये रखा गया--

मे बहुत बड़ा मेदान है यह रास्ता बना रास्ता के साइड मे बहुत सारे पेड लगे हुवे यहा पर चार गाड़िया भी खड़ी गई है और सूरज की रोशनी एक रास्ते मे--

यहाँ पे एक मैदान है बच्चों को ड्रॉइंग कर र हैं है दो से तीन लोग इनकी की फोटो खींच रही है बहुत सारे बच्चे रकम रकम की ड्रॉइंग कर रही है वॉटर कलर क्रिस्टल कलर यहाँ बच्चे यहाँ पे बच्चे गार्डन में--

बस्ती के साइड है बहुत सारी बाइक दिखाई दे उपर मे एक पेढ भी है पेड़ पे झाड़ी है पेड़ वो पेड़ के पूरे पके हुए पत्ते झड़ हुए है यहाँ पे आस-पास बहुत सारी हरियाली चाय हुई है यहाँ पे एक लाइट पोस्ट भी लगा हुआ है जिनमें बहुत सारी लाइट लगी है ।

यहाँ पर डॉक्टर का क्लिनिक दीखाई दे रहे है जहा पे एक लेडी डॉक्टर और एक और दो जेंट्स डॉक्टर यहाँ पे बैठे हुए यहा पे डॉक्टर्स लाल चेयर पे बैठे हुए है यहाँ पे मरीज मर गई जिसमे यहाँ पे एक सफेद रंग के कागज मे लिखा हुआ है ले--